लल लाइट का ई है अन्ना है बाल्टी है बैठने का चीज है कप है गिलास है डेंटिस्ट है।

एस.के.ई.आर.डबलू.ए.टी.वी. एक पोस्टर है आदमी लोग घुस सकते है बड़ा है सजावट है।

एक आदमी जुलिस्ट टाइप किया है चार गो तीर मारा है ।

एक आदमी ट्रक के बात कर रहा है दूसरा मार्क्स पहने खड़ा है तीसरा ज्यादा।

सीडी है सामान है पंखा है।

और छद अम अ पक्का का दीवार है| ।

में मूर्ति बना है मंच और तार से घेरा हुआ है दू गो नारियल का पेड़ है बहुत सारा पेड़ है किया गया है।